इहा एक बड़ा ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड में कुछ गेम का बना हुआ है और साइड में दिख रही है।

जिसमे पेड़ लगे हुए है। दो पेड़ लंबे दिख रहे है बड़े और बाउन्ड्री दिख रही है।

और दो आदमी है जो- डांस कर रहे हैं।

यहाँ बहोत सारे भगवान की फोटो लगे हुए हैं और मूर्तियाँ रखी हैं और एक लेडिस और बच्चा हाथ जोड़ के खड़े हैं।